पिंक ह- येल्लो व्हाइट कलर में और रेड कलर में और ब्लू कलर में बत्ती जली हुई है और ये व्हाइट कलर से पूरे फूल बने हुई है जो कि बहोत खूबसूरत लग रही--

ये भी एक चर्च है जो कि ब्लू कलर की बनी हुई है और वहाँ पे एक मूर्ति भी टंगी हुई है और यहाँ पे पे--पेंटिंग भी लगा हुआ है और यहाँ बहोत सारे प अ- बैलून से सजाये हुए है और बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

और ये बहुत ही प्यारा और यहाँ पे ये चर्च जैसा बना हुआ है और ये वो खूबसूरत शीशा मे पेक किया हुआ है।